और बहुत ही ज्यादा पनियाँ इसमें भर गई है।

यह एक बहुत ही बड़ा और चौड़ा नदी है और गहरा भी है ।